और एक जगह पे इलेक्ट्रिक खंभा भी है पीछे की तरफ एक गेट बना हुआ है वहां पे दो चार लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर मुझे किसी बड़े मैदान की तरफ का लग रहे है यहां पे इलेक्ट्रिक खंभे भी गड़े हुए है।

और यहां पे बहोत सारे बाइक स्कूटी --

हैंडवाश और चिप्स कुरकुरे खाने का आइटम दिखाई दे रहा है ये काफी लंबे चौड़े रैक पे टंगा हुआ है यहां पे।

इस इमेज में मुझे तनिष्क ज्वेलर्स का एक लोगों दिखाई दे रहा है शायद ये तनिष्क ज्वेलर्स शॉप का कोई काउंटर है यहाँ पे कोई काउंटर का मेंबर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे --

एल_इ_डी लगे हुए हैं जो काफी शानदार लग रहे हैं यहां रैक में काफी सारे साड़ियां कपड़े वगैरा जमे हुए है।

इसमें तीन भी दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे छोटे देवी देवता अंदर में विराजमान है।

दुकान वाले का तस्वीर हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हैं अदरक आलू--

यहां पे एक छोटी सी बच्ची बैठा हुआ है वहां पे एक पानी वाला वॉयस करने वाला--

यह तस्वीर किसी शोरूम या किसी--

कुर्सी पे और कुर्सी है लेकिन वो खाली है यहां पे रेन कोट वगरैह भी है शायद मेरे खयाल से।

और ये किसी मच्छि मार्केट से किसी मच्छी दुकान वाले के यहां का इमेज है यहां पे काफी सारे छोटे छोटे हल्के से लंबे लंबे बड़े बड़े मछलियां है।

भाजी तरकारी यहाँ रखी हुई है इस मिर्चा दिख रहा है ये लाल मिर्चा दिख रहा है यहाँ पे कुछ- कुछ आलू वगैरह और दिख रहा हैं।

यह नेट भी लगा हुआ है नीले कलर के--

इस इमेज में हमें भी एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे हैं जो सामने में हैं।

यहा पे लगभग चार टेबल है जिसमे चारो मे के टेबल बिछे हुए है।

और पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसका पेंटिंग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है काफी साफ सुथरा ये होटल है।

अब ये नीचे कुछ चटाई भी बिछे हुए हैं हरे कलर के जो काफी अच्छे दिखाई दे रहे